यहां पे आप देख सकते हैं।

और अन्दर में चेयर रखा हुआ है और अन्दर सारी भी है और ब्लैक कलर का चेयर है।

और साइकिल है और साइकिल का कलर रेड कलर का है।

यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे--

और यह एक पुल बन रहा है वाइट कलर का।